मॉडल विलेज यानि आदर्श गाँव160 हिवारे बाजार के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न के बारे में सीखेंगे 1
हिवारे बाजार के लोगों के सामने आने वाली समस्याएँ 2
हिवारे बाजार की वास्तविक स्थिति और 3
इन बदलावों को लाने वाली कार्यप्रणाली हिवारे बाजार के लोगों के सामने आने वाली समस्याएं हिवारे बाजार के लोग कृषि के लिए वर्षा पर निर्भर थे
मिट्टी का भारी कटाव भूमि की गुणवत्ता को ख़राब कर चुका था
पीने का पानी मुश्किल से उपलब्ध था
उनके पास पर्याप्त चारा नहीं था
लकड़ी का ईंधन भी उपलब्ध नहीं था
ये बहुत सी सामाजिक समस्याओं की ओर अग्रसर करता है जैसे बेरोज़गारी
लोगों को नौकरी मिलना मुश्किल हो गया था
स्थानान्तरण लोगों ने गाँव से स्थानांतरण शुरू कर दिया था
और अपराध दर में वृद्धि हुई
हिवारे बाजार की वर्तमान स्थिति
प्रति व्यक्ति आय 1995 में 830 रूपए से बढ़कर 2012 में 30000 रूपए हो गयी
गांव में 60 लखपति हैं
गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या 1995 में 168 से 2012 में केवल 3 रह गयी
उसी दौरान दूध का उत्पादन 150 लीटर से बढ़कर 4000 लीटर हो गया
साक्षरता दर 30 से बढ़कर 95 हो गयी है
अपराध दर काफी नीचे आ गयी है
और रोज़गार में वृद्धि हुई है
वह कार्यप्रणाली जिससे स्थिति में सुधार हुआ
पांच आयामी दृष्टिकोण या पंचसूत्री 1नि शुल्क स्वैच्छिक श्रम या श्रमदान 2
चराई पर प्रतिबंध या चराई बंदी 3
पेड़ काटने पर प्रतिबन्ध या कुरहड़ बन्दी 4शराब पर प्रतिबन्ध या नशा बन्दी 5
परिवार नियोजन या कुटुम्ब नियोजन श्रमदान लोगों ने समुदाय के कल्याण के लिए एक साथ काम करना शुरू किया
ग्रामीणों ने एक कार्य संस्कृति विकसित की
वे पानी के प्रवाह को कम करने के लिए पहाड़ियों के पास चैक डैम का निर्माण करने एक साथ आए
चैक डैम ने भूजल के स्तर को बढ़ाने में मदद की और मिट्टी के कटाव को कम किया
चराई बन्दी मवेशिओं की अधिक चराई बन्द की गयी
अधिक चराई मरुस्थलीकरण और मिटटी के कटाव का कारण बनती है
चराई पर प्रतिबन्ध घास का उत्पादन 1994 95 में 200 टन से 2001 2002 में 5000 6000 टन से भी अधिक हो गया
कुरहड़ बन्दी पेड़ों के काटने पर प्रतिबन्ध लगाया गया
पेड़ मिट्टी के कटाव की रोकथाम में मदद करते हैं
मिट्टी का कटाव भूमि को ख़राब करता है और इसलिए कृषि योग्य भूमि कम रह जाती है
पेड़ बारिश के पानी को धीमा करते हैं और भूजल के स्तर को बढ़ाते हैं
पेड़ों के अवशेष मिट्टी को उपजाऊ बनाने में उपयोगी होते हैं
नशा बन्दी 22 शराब की दुकानों को बंद करा दिया गया
तम्बाकू और शराब के सेवन कोपूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया
ग्राम सभा ने बैंकों से अनुबंध करके उनको ऋण दिलवाया जिनकी शराब की दुकानें थीं
अपराध की दर कम हुई
लोग अधिक उपयोगी कार्यों में लगे जिससे समुदाय को मदद हुई
कुटुम्ब नियोजन प्रति परिवार एक बच्चे का सख्त नियम लगाया गया
जन्म दर प्रति हजार 11 कम हुई
यह महिलाओं में गर्भावस्था से संबंधित स्वास्थ्य के खतरे से बचाता है
परिवार नियोजन से शिशु मृत्यु दर भी कम होती है
यह लोगों को समर्थ बनाने और परिवार की शिक्षा को बढ़ाने में मदद करता है
परिवार नियोजन एक दीर्घकालिक समुदाय बनाने की कुँजी है
इस ट्यूटोरियल से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गाँव का सामूहिक प्रयास एक विशाल बदलाव ला सकता है
पंचसूत्री सिद्धांत बहुत प्रभावी साबित हुए हैं
इन कार्यप्रणालियाँ का अनुसरण करके ऐसे कई आदर्श गाँवों का निर्माण हो सकता है
ये हमें इस ट्यूटोरियल के अंत में लाता है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
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रपोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है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
यह भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है
इस मिशन पर अधिक जानकारी httpspoken tutorialorgNMEICT Intro पर उपलब्ध है
आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ
हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद